और यहां पे बहुत सारा पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा--

यह एक रोड का दृश्य है रोड में टाइल्स भी लगाया गया है और रोड के बगल में पोल भी है।

और इसमें बहुत सारा लाइट लगाया गया है और टाइल्स भी लगाया गया है।

और यहां पे पेड़ पौधा भी है और रोड भी दिखाई दे रहा है।

स्वेटर गुलाबी और नीला और पीला और लाल रंग का है।